बिल्डिंग को लाइट से सजाया गया है बिल्डिंग के साइड में एक रोड है जिसमें की एक बाइक वाले व्यक्ति आ रहे हैं।

यह एक छोटा सा पहाड़ का चित्र है यहां पर झरना जैसे हैं और एक व्यक्ति नहा रहे है।

घड़ी पहन कर डांस कर रही हैं और तीनों डांसर ने हाथ फैला दी है ।

यह एक आत्रा का चित्र है यहां पर सामने में एक आकृति का रथ बनाई गई है।

बिल्डिंग में एक ए_सी लगा हुआ है इसके पीछे एक बहुत बड़ा रोजे दिखाई दे रहे हैं।

और मॉल में टाइल्स सफेद कलर के लगाए गए हैं।

हॉल के ऊपर में ब्लैक कलर का है।

इस आकृति में बहुत पुराना घर है।

इस घर में बहुत सा घास हो गया है घर के पीछे पेड़ भी है थोड़ा थोड़ा दिख रहा है और घर के आगे भी पेड़ है।

जिसके ऊपर में एक पोस्टर लगाया गया है भगवती मिल्क पार्लर का और इस दुकान को अल्वेस्टर से छाया गया है।

पिछे में सफेद कलर का दीवार दिखाई दे रहे हैं इन सब स्ट्रक्चर में किसी गांव के बारे में दिखाई दिखाया गया है।

बस के आगे भी पेड़ है और टाइल्स पत्थर का लगा हुआ--

जिसके पीछे से अगल बगल में पेड़ पौधे हैं।

जिसमें एक महिला और पुरुष है पीछे मे एक मूर्ति की आकृति भी बनाई गई है।

एक आदमी का मुँह ढका हुआ है और ढेर सारा लाइट लगाया गया है दो बड़ा बड़ा दुकान है ।

और पहाड़ के ऊपर में रोपवे लगाए गए हैं।

फोटो में मंदिर हैं जिसमें एक आदमी खड़े हैं।

इस चित्र में एक बहुत बड़ा मंदिर है उसके साइड में बहुत दो बड़ा बड़ा बिल्डिंग है उसकी इधर सामने सामने में एक पंडाल है।

विद्यार्थी के पीछे एक मिरर लगा हुआ है मिरर के साइड साइड नीले रंग के हैं मि मिरर में इस पार का आदमी उस पार दिख रहे हैं और मिरर में भी फोन भी दिख रहे हैं ।

जिसमे एक टेबल भी रखा हुआ है और एक सीसा भी है ।

एक खिड़की भी है एक दरवाजा भी लगा हुआ है।

इस दुकान के सामने बहुत सारा कंप्यूटर का सामान रखे गए हैं।

यहां पर सामने में रेड कलर के कुर्सी है इसके सामने में टब रखा गया है।

दीवाल भी है और खिड़की लगा हुआ है।

बहुत बड़ा दो गेट लगे हैं जिसका कलर एक मिट्टी कलर का गेट है और एक गेट का कलर ग्रीन कलर का है।